यह एक ईसाई धर्म का चर्च है इस चर्च में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं बगल में टेंट लगा हुआ है रात का समय है लाइट भी जल रहे है और यहाँ --

यह एक मिठाई का दुकान है जिसका नाम स्नैक बार है इसमें बहुत सारे मिठाइयाँ उपलब्ध है।

यहाँ एक किराने का दुकान है। इस किराने की दुकान में बहुत सारे समान हैं जिसमें से आपका अ किराने का पूरा सामान उपलब्ध है जैसे हल्दी नून मिरचाइ का पैकेट ।

बहार मैन गेट से दो कस्टमबर खड़े हैं जो एक अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं।

पुतलो को दर्शाया गया है | पुतलो को बीच मे एक पौधा है और यहाँ फोटो मे बहुत सारे जेंट्स और लेडीज का परतिमा बनाया गया है जो की काफी अच्छा लग रहा है।

यह एक दुकान है। इस दुकान में दुकानदार --

इस सब्जी के दुकान में हरे-भरे सब्जी हैं।

अपने फिटनेस को सही करने के लिए जिम कर रहें हैं।

और एक लड़का अपना माथे पे टिका लगाकर --

शायद यह कोई नाटक का प्रोग्राम चल रहा है।

सीट यानि छत का भी इंतजाम किया गया है यह पार्क में काफी --

यह एक स्कार्पियो है स्कार्पियो के दोनों गेट --